यहाँ पर ये बिल्डिंग भी है जो की रेड अँड हाँ--

यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स है ब्लैक कलर की मैटिंग लगी हुई है बस पूरी चेयर--

यहाँ पर एक आ अं टेबल भी रखा गया है जिसपे इलेक्ट्रिक फ्लास्क --

पी है यहाँ पर एक ब्लैक कलर का पेज भी दिखाई दे रहा है हमे यहाँ पर हमे दो बॉटल्स भी दिख रही है।

इसमे पिलर्स व्हाइट लगे हुए है इसमे फॅन्स लगे हुए है।

इसमे चेयर्स लगी हुए है जो की उसपे बैठे हुए है लोग--

इस पीक मे हमे देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा व्यू --

इस रि का नाम है डांस एरा इसमे शटल पे लिखा है थ्री व्ही डांस एरा दूसरे पे हिपहॉप --

वहाँ पर हमे दो तीन पॉट्स दिखाई दे रही है जिसमे फूल है और हमे--

इस मे एक महिला चर्च मे पूजा कर रही है और जहां पर इनको वहाँ पर ब्राउन कलर की खिड़कियां है वहाँ पर--

यहाँ पर हमे प्लांट्स देखने को मिल रहे है यहाँ पर हमे सब कुछ देखने को मिल रहा है लोग ट्रीज प्लांट --

ये एक व्हाइट टेंपल है जहां पर ये गेट लगा हुआ है व्हाइट कलर का--

ये नाई का दुकान है जहां पर एक नाई अं इसकी कटिंग कर रहा है।

इस पीक मे हमे ये देखने को मिल रहा है की यहाँ पर हमे बहुत सारा --

हमे इस पीक मे दिखाई दे रहा है की इसमे बहुत सारे अच्छा व्यू आ रहा है जहां पर हमे देखने को मिल रहा है की इसमे--